एक पुराना सा मकान दिख रहा है ऐसे लग रहा है जैसे बहुत पुराना हो उस छत पर भी कुछ नहीं बना --

कई बहुत सारे पंखे लटके दिखाई दे रहे हैं एक दीवार पर घड़ी दिखाई दे रही है।

लटकी हुई है और दो चेयर रखी हुई है और चेयर खाली और आंगन की टाइलें ब्राउन कलर की दिख रही है।

ये एक गोलाकार दरवाजा दिख रहा है ऊपर से गोल किया हुआ है और बीच में दूर से खंभा --

भगवान बुद्ध की मूर्ति है।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

एक नमक का डब्बा सब दिखाई दे रहा है।

स्टैंड्स सा दिखाई दे रहे है लोगो को बैठने की व्यवस्था हो --

तरह के ड्रम रखे हुए है।

दूर से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है कुछ बड़े पेड़ कुछ छोटे पेड़ --

रात का नजारा दिख रहा है और एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

पीले और रेड कलर का बना हुआ है आगे बिंडा सा बना हुआ है दो खंबे लगे हुए हैं।

भीड़ आगे बहुत सारी बाईकें खड़ी हुई है।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

एक दुकान दिखाई दे रही है उसमें बहुत सारे सामान से पूरी भरी हुई है उसमें कुछ--

बाबा की मूर्ति नजर आई है जो ऑरेंज कलर की है भैरू बाबा की एक त्रिशूल आगे --